इस इमेज में एक्टा टू स्टूडियो दिखाया गया है।

लोग सुबह आकर नाश्ता करते हैंपराठे के साथ--

इस इमेज में यह गांव का व्यू दिखाया गया है।

जो कि बहुत साफ सुथरे रखे हुए हैं।

और यहां पर गाड़ियों के स्पेयर्स पार्ट्स भी दस्ताब होते हैं।